ये एक पी.वी.आर. हैं इसमें पिक्चरे देखी जाती है वाइट कलर का सफ़ेद रंग का पर्दा है काले रंग की लाइटे --

नीले रंग का आसमान है हरे रंग का पाइप भी बिखरी हुई है लाइटें भी लगी हुई हैं अच्छा लग रहा है बोहोत अच्छा लग रहा है।

इसमें आप देख सकते हैं मॉल है यहाँ पे फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट है रेड कलर से लिखा है सेल फिफ्टी परसेंटज। बहुत ही अच्छा --

और काले रंग का दरवाज़ा है हरे रंग के खेत हैं और अच्छा है काफी पर --